ये एक पेट्रोल पंप है यहाँ सामने की तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक व्यक्ति भी--

पेड़ भी है चारों तरफ भी कुछ हरे रंग के पेड़ भी हैं और कुछ व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं एक लड़की खड़ी है इसने कंधे पर पिठो बैग --

टंगा हुआ है काले रंग का कुछ मोटरसाइकिल सामने की तरफ है।

यहाँ सामने की तरफ हरे-हरे रंग के ऊंचे पेड़ भी हैं बाहर रोड पे दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

ये एक बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे बहुत सारे चारों तरफ हरे हरे--

यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ एक समुंद्र में एक नाव भी है और कुछ ऊबर-खाबर सी जगह है कुछ हरे-हरे छोटे-छोटे पेड़ से भी नजर आ रहे हैं चलने के लिए फुटपाथ भी--

कैप पहनी हुई है सर के ऊपर लाल रंग का फर्श नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है सामने की ऊपर की तरफ लाइटें भी--

खड़े हुए हैं एक व्यक्ति ने जैकेट पहनी हुई है हाफ एक व्यक्ति ने कोर्ट पहना हुआ है कुछ लोग दूसरी साइड भी खड़े हैं बुक्स को देख रहे हैं।

एक नीले रंग की पानी की बोतल रखी है एक फोन भी रखा हुआ है पास में नीचे की तरफ भी कुछ सामान पड़ा हुआ है एक व्यक्ति नीचे की तरफ झुका हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं कुछ कट्टे पीले रंग के हैं कुछ नीले रंग के हैं कुछ सफेद रंग के हैं इन कट्टों के अंदर अलग-अलग--

ड्राइवर पीछे की तरफ कुछ सवारियां बैठी हुई हैं एक स्कूटी भी है सामने की तरफ ऊंची बिल्डिंग भी नजर आ रही--

यहाँ रोड पे बहुत सारी बसें खड़ी है एक लंबी बस हैऑरेंज कलर की इसमें चार टायर हैंदो काले टायर आगे की तरफ दो पीछे की तरफ एक हरे रंग की--

ये एक खाली मैदान है यहाँ पर छोट हरी-हरी घास छोटी-छोटी घास लगी हुई है पीछे की तरफ हरे हरे--

पेड़ भी हैं कुछ सूखे पेड़ भी हैं कुछ हरी-हरी घास भी नजर आ रही है बहुत सारे लोग भी यहाँ पर--

कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके अंदर फूल भी उगे हुए हैं कुछ गुलाबी रंग के कुछ लाल रंग के कुछ पीले रंग के फूल भी उगे हुए हैं कुछ हरे-हरे रंग के पेड़ भी--

पोस्टर चिपके हुए हैं उनके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है खिड़कियां लगी हुई है शीश की उनमें से बाहर की तरफ पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहाँ सामने की तरफ एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है इधर की तरफ इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है पीछे की तरफ कुछ सामान भी--

और कुछ सेल्फ लगी हैं सामने की तरफ इनके अंदर कप वगैरह भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

सर पर गुलाबी रंग का मफलर पहना हुआ है कुछ व्यक्ति खड़े हैं और सर पर--